लाल कलर में गेट है ब्लू कलर में गेट है।

भाई ये मनी बैठा है सब है इसमें सागवन का पेड़ --

हवाई जहाज खड़ा है कार खड़ी है।

बहुत सारा मैदान है बहुत बड़ा मैदान है।

ए और मोटरसाइकिल खड़ी है दो लोग तीन लोग खड़े हैं एक लोग मोबाइल देख रहे हैं।

बहोत सारे लोग इकट्ठा हैं। दोतला घर है हरीहर में उज्जर में।

सुखा-सुखा पेड़ हैं लाइट का खम्भा खूब बड़ा सा लगा है। ऊपर से खूब बड़ा-बड़ा सीढ़ी बना है इस में ऐसा दिख रहा है हम को।

गोल्डन कलर का है सफ़ेद कलर है। कुछ मूर्ति बनी बुद्ध भगवान की मूर्ति है पिछवां गोल्डन कलर की मूर्ति है। आ ई पता नही क्या है।